एक नाव उल्टा पड़ा है.

एक नाव के ऊपर आदमी खड़ा है.

और सामने में जाली भी लगा हुआ है.

ओर इसके सिंग पर से पानी का फवारा निकल रहा है.

यह एक होटल टाइप दिखाई दे रहा है.

और ऊपर में कुछ व्हाइट कलर का डिज़ाइन्स हैं जिसमें लाइट जल रहा है.

और एक बॉक्स में मैगी का पैकेट दिखाई दे रहा है.

और दो-तीन आदमी भी दिखाई दे रहे हैं.

यहां कुछ छोटा छोटा पौधा भी है ग्रीन कलर का.

यह एक रूम हे.

यहां पे कुछ हाथ में भी है.

रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ है.

और कुछ मशीने भी रखे हुए हे.

और सीडी है बगल मे नारियल का पेड़ है.

और इसके नीचे प्लास्टिक बेग लगा हुआ है.

माथे में टोपी भी लगाए हैं.

जहा पे एक रेड कलर का फॉर वीलर लगा हुआ हे.

और इस बगल मे आदमी भी खड़ा हे.

यह एक फ्लावर बगान जैसा दिखाई दे रहा हे.

और फूल भी ऊगा हुआ हे.

और खाना का उसमें बना हुआ है चित्र.

तार भी दिखाई दे रहा हे.

जहाँ पर एक ब्लु कलर का बेग रखा हुआ है निचे में.

यहां पर बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं.

जहाँ पे बोहोत सारे हरे हरे सब्जी हे.

और केला का पेड़ भी हे.

सामने में ब्लू कलर का बेरिंग है.